इस तस्वीर में मुझे बहोत बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है।

सामने बगीचे में फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस पे बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

पूरा आसमान का कलर सफेद और नीला है यह उप--